हरे भरे पेड़ पौधे घास उगी--

बहुत बड़े हॉल की फोटो है।

रोड पड़ता है ऊपर बड़े बड़े पहाड़ लगे हैं नीचे गाड़ियां चल रही--

विकेट टी शर्ट्स मिलती हैं ऊपर बहोत सारे फुटबॉल पड़े हैं।

ये फोटो आर_आर_एम_के आर्या महिला महाविद्यालय की --